ये एक बँक है इस बँक का नाम कॅनेरा बँक है। बँक के बाहर बहुत से लोगों के--

आते है इस बैंक मे बहुत सारे ए_सी और कैमेरे भी लगे हुए है।

यह एक चाय की दुकान है यहा पर कुल्हड़ चाय प्रसिद्ध है।

यहा पर एक समुद्र है इस समुद्र मे बीचों बीच एक नाव खड़ी हुई है इस नाव मे दो झंडे लाल रंग के लगे हुए है।

यहा पर एक बहुत बड़ा तलाव है तलाव के किनारो पर दीवार बनी हुई है।

यह एक कॅफे है इस कॅफे का नाम चॉकलेट कॅफे है यहा पर एक दीवाल है जीसपर चॉकलेट कॅफे का बोर्ड लगा हुआ है।

यहाँ पर चारो तरफ हरियाली ही हरियाली है और बहुत से हरे भरे पेड पौधे--

लगे हुए है और कुछ ही दूरी पर एक बहुत ही लंबी नदी है इस नदी के दूसरी तरफ बहुत बड़े पहाड़ भी है।